यहां पर कैलकुलेटर नजर आ रहा है सीज़र नजर आ रहा है और एक पेन दिख रही है सफेद रंग की लाइट्स लगी हुई है और फैन नजर आ रहा है ब्राउन कलर का सी_सी_टी_वी कैमरा नजर आ रहा है घड़ी नजर आ रही है।

यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहा है यहाँ एक स्टेज को सजाया गया दिखरा है वहाँ पर काफी जो महिलाएं है वहाँ वहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक जो डेली नीड्स का शॉप होता है जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है जहाँ बाहर में काफी सारे चिप्स के पैकेट दिखाई दे रहे है।

ऊपर एक बड़ा सा पुतला नजर आ रहा हैं जो अंदर की एंट्रेंस जो है वह काफी अच्छी तरीके से बनाई गईं हैं इसे गोल्डन कलर से बनाया गया है।

और एक स्वीट मार्ट नजर आ रहा है एक छोटा-सा रेस्टोरेंट की तरह दिखाई दे रहा है काफी सारे स्वीट्स वहाँ पे नजर आ रहे हैं।

काफी बड़े हरे वृक्ष नज़र आ रहे हैं हरी घास नज़र आ रही हैं वही आसमान भी साफ दिखाई दे रहा हैं।

काफी सारे वहाँ चेयर्स नजर आ रहे हैं काफी वहाँ पर बड़ा सा कैंपस नज़र आ रहा है काफी बड़े हरे वृक्ष नजर आ रहे है हरी घास काफी सारा दिखाई दे रही है और काफी लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं।